सुर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा लाल दिखाई दे रहा है।

कपड़े रखें गए हैं और ग्रिल से घेरा गया है रेलिंग --

किसी जगह का ऑफिस है जहां पे बहुत सारे आदमी कांच से घेरा गया है उसके बाहर में दिखाई दे रहा कुछ अंदर में दिखाइए दे रही है।

कुछ फूल पीला कलर के हैं और बहुत अच्छे अच्छे लाइटे भी लगाया गया है।

यह एक किसी चीज का दुकान है जहां पे बहुत सारे सामान रखे हुए हैं खिलौना बहुत सारे बच्चे का जो बच्चे खेलते हैं।

यह एक शादी का फंक्शन है जहां पे बहुत सारे आदमी बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

बगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे फूल बहुत अच्छे से लगाया गया है।

चाहे किसी जगह का दृश्य जहां पर बहुत दूर दूर तक पेड़ लगाए गए हैं।

बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं और सामने में बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ आदमी बैठे हुए हैं कुछ आदमी खड़े हैं।

लाइट और पंखा भी लगाया गया है और दीवार का कलर सफेद किया गया है।

टाइल्स मार्बल इसमें भी लगाया गया है।

आदमी भी दिखाई दे रहा है।

बगल में भी बिल्डिंग है।

पूरे बड़े बोर्ड में लिखा गया है मौलाना आजाद कॉलेज रांची।

एक घड़ी भी दिखाई दे रहा है।

ई लोहा से घिरा गया है और सब दुकान बंद दिखाई दे रहा है सामने में--

सामने में बिल्डिंग के नीचे गाड़ियां भी दिखाई दे रही है टू व्हीलर थ्री व्हीलर ।

यह एक फूल का दुकान है यहां पे बहुत अच्छे अच्छे फूल दिखाई दे रहे है।

यहां पर दिखाई दे रहे हैं सामने में बहुत सारे आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

यह किसी जगह का पार्क जैसा है जहां पर बहुत सारे नाव में जगे हुए हैं।

टाइल्स का रंग कुछ लाल है कुछ सफेद है।